और हॉल क्या स्टेज स्टेज है प्रॉपर अल अ राइट हॅन्ड साइड में पंखा हैं।

उधर स्टूडेंट्स है वो लोग ड्राइंग कर रहे है और आर्ट्स बना रहे हैं।

और इधर दिख रहा है पूरा आसमान खुला आसमान दिख रहा है और ऊपर टेरेस है बड़ी सी--

और एक घर भी दिख रहा है जो ग्रीन कलर का हरा कलर का बना हुआ है।

और आपको जैसा चाहिए वैसे पौधे हैं।

स्टूडेंट्स अ ये स्टूडेंट्स है डॉक्टर के।